किसी हुई चीज को दिखाया जा सकता है और उस घर का गेट का कलर ब्लू है यहां पर इस सीमेंट से नीचे का फर्ज बना हुआ है।

ये मार्केट है यहां पर सभी लोग सामान खरीदने आते हैं यहां पर मछली ओछली सभी मिलती हैं देख रहे हो सामने की ओर एक कैरेट रखी है रेड कलर की यहाँ पर एक आंटी साड़ी पहने पीली कलर की --

यह यह फेस में कुछ लगाए हैं और उसको क्लीनिंग करवा रहें हैं अपने फेस को बाल भी कटवाए हैं। एक या दो लोग बैठे है एक फ़ोन चला रहें हैं एक फोटो खींच रहें हैं। पीछे की ओर दो टॉवल टंगी हैं --

बहोत देगा। सभी लोग वाइट और रेड कलर का टोपा पहने हुए हैं और ए स्कूल काफी भीड़ --

यह एक क्रिश्चियन लोग है और ये काफी क्रिश्चियनो ये सबसे बड़े हैं मास्टर हैं । यहाँ पर ये लोग फ़ोटू खींचा रहे है उस पर आठ-सात लोग है जो फ़ोटू खींचा रहे हैं।

टूटा और ये भइया बैठें हैं। टाइल्स का नाप ले रहें हैं। घास भी लेनी है यहाँ की और काफी अच्छी शानदार व्यू लगता लग रहा है यहाँ का या --

ये देखिये यह एक पुल है। जो जनता ने अपने हाथों से मतलब खुद बनाया हुआ है।